ऊपर एक फैन भी लगा हुआ है।

कुछ लोग हैं। एक आदमी कुर्सी पर बैठा है और ऑरेंज कलर की कुर्सी है।

जैसे कि लिशकनिया जैसी टांगी हुई हैं और टेबल पड़ी है जिसपर रेड कलर बेस दिख रहा है।

खाकी रंग का है टेबल अह ये जो बॉक्स है रेड कलर का है।

ब्लैक स्लैक्स और इसने ऊपर एक लेहंगा जैसा पेहना है रेड कलर का।

दिख रहा है बोर्ड लिखा है वेलकम टू टूरिज्म कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र औरंगाबाद --

दो लड़के एक बैठा हुआ है और एक खड़ा होकर कर रहा है।

साइडों में भी कुछ पत्थर पड़े हुए कुछ छोटे और कुछ बड़े पत्थर दिख रहे--

ये एक सामने मंदिर जैसा दिख रहा है।

जिस पर साइड में सीढ़ियां ऊपर की ओर जा रही हैं।

जिसमें रेड फुल लगा हुआ है पौधे में--

एक ने फ्रॉक सूट पहना है।

ये एक दुकान है जहां पर पीछे शेल्फ बनी हुई हैं खाने बने हैं।

बॉक्स जैसे पड़े हैं डब्बे भी पड़े हैं और भी ग्रीन कलर के ब्लू कलर के--